यह एक नीरज फाउंडेशन स्कूल है जो नीरज नाम से है स्कूल बहुत अच्छा हैं पेंटिंग हैं जो बच्चों के लिए आकर्षित करेगा और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं।